और कुछ छोटे छोटे गुड्डे भी है।

सामने एक रैक पर बहुत सारे छोटे छोटे डिब्बे और कुछ पैकेट लटके हुए हैं।

ये एक गार्डन है जिसके किनारे वल डस्टबिन रखी है।

और दूर दूर तक कुछ घर दिख रहे है।

एक एल_सी_डी सामने दीवार पर लगी है।

ये एक आइसक्रीम की दुकान है।

नीचे दो औरतें बैगन काट रही हैं।

सामने एक पानी का टैंकर है।

और बहुत सारे लोग खड़े दिख रहे हैं।

और इसमें कुछ सफेद कलर से लाइने भी खींची हुई है।

और साइड में ऑरेंज कलर की दीवार है।

साइड में हरे पेड़ गमले में लगे हुए हैं।

और साइड में भी कुछ बोर्डस दिख रहे हैं।

दूर पर एक घर बन रहा है।